अच्छे तरीके से सामान को रखा गया है।

लोडेड गाड़ियां जा रही हैं और सामने से दिख रही हैं।

टेबल पर बहोत सारा सामान यहां पे रखा गया है।

ये एक बहोत बड़ा बस स्टैंड है बस स्टैंड में बहोत ज्यादा--

और सभी लाइन में लगे हुए है अपनी टर्न अपनी बारी का इंतजार कर रहे है।

पंखा लगा हुआ है बहुत ही सुन्दर सजावट की गई है।

ये एक गाड़ी है गाड़ी बहोत ही अच्छी पार्किंग की गई है और बहोत सारी गाड़ियां यहां पे--

ये बहोत ही इस यहां पे डॉक्टर है।

और वो सामान यहां पे पड़ा हुआ है।

और बहुथा सामान यहां पे सेव करके रखा हुआ है और--

ये बहुत ही बड़ा यहां पे रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट पे टेबल पे रखा सामान है चेयर है कुर्सियां है पड़ी हुई --

जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ बहोत सुंदर लग रहा है।

शोरूम सजाया हुआ है और अच्छा भी लग रहा है देखने को।

ये एक बहोत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया हुआ है बच्चों के खेलने के लिए और--

और उसमें एक नाव चला रहे हैं दो आदमी जा रहे हैं और पानी का रंग नीला है सामने से बहुत सुंदर पहाड़ दिख रहे है।